पोस्टर के जस्ट नीचे से एक नाली गुजरा हुआ है।

आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे पेड़- पौधे भी दिखाई दे रहे छोटा- छोटा पहाड़ भी है।

इसके अंदर लाइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की गई साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

एक कुर्सी लगी हुई है गेट का ग्रिल लोहा का बना हुआ है एक खंभा जैसन दीवार खड़ी है।

ऊपर में एक पंख लगाया हैजो वाइट कलर की है।

यह एच_पी कंपनी का शोरूम है इस कंपनी में बहुत अच्छी लाइटिंग की गई है।

इसके ऊपर से एक बिजली के तार गुजरा हुआ है डी_जे के बगल में एक घर है घर का पेंटिंग किया गया है।

फल है और उसके चारों ओर बहुत सारे लड़के आदमी खड़े हैं।

मिट्टी का कपटी रखा गया है और उसके बगल में एक क्यू_आर कोड लगाया गया है जो कि फोन पे फोन पे कंपनी का है।

आजू बाजू के क्षेत्र में बहुत सारा पुड़िया टाइप का कुछ लटकाया हुआ है बहुत सारा सामान है।

आसपास का क्षेत्र में बहुत अच्छी लाइटिंग की गई है।

यह दृश्य एक जंगली इलाका का है जिसमे कि बहुत बडे बडे चट्टान दिखाए गए है।

यह एक ढाबा है। इस ढाबा के बाहर में एक कार गाड़ी खड़ा हैजो की ब्लैक कलर का है।

एक कुर्सी लगी हुई है जो कि ब्लैक कलर की है आसपास का क्षेत्र बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

कुछ बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं और आजू बाजू के क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे भी हैं रोड के किनारे बहुत सारा घर भी दिखाया गया है।

घर की ओर एक फुल पैंट और शर्ट पहने हुए व्यक्ति जाते हुए दिख रहा है।